छे खिड़कियां हैं और यह स्कूल या कॉलेज का पीछे का नजारा है।

का नजारा किसी खेत का है। यहाँ पर हरियाली

अन्न्न्न्न् स्वयं गंगा विराजमान है। जल निकल रहा है और उनके --

बहुत सारे गमले रखे हुए हैं और जिसमें अनेक प्रकार के पौधे पेड़ पौधे लगे --